कंडक्टर नज़र आ रहा है कुछ सड़क भी नज़र आ रही है पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है कुछ महिलाए भी नज़र आ रही है कू--

कुर्सी नज़र आ रही है एक पेड़ नज़र आ रहा है और एक झोपड़ी भी नज़र आ रही एक साइकिल भी नज़र मे आ रही है कुछ पत्थर भी दिख रहे है।

एक तालाब भी नज़र आ रहा है कुछ पेड़-पोधे भी नज़र आ रहे है कुछ पत्थर भी नज़र आ रहे है ।

कुछ बड़ा बैल का मोड भी दिखे रहा है। सड़क भी दिख रही हे ओर कुछ पेड़ पोधे भी दिख रहे हे और पत्थर भी दिख रहे हे।

इसमे मुझे ऐर्टेल पेमेंट बो बैंक का बोर्ड भी दिख रहा है कुछ मोटर साइकिले भी दिख रही है कुछ मकान भी दिख रहे है ।

इसमे मुझे कुछ झरने भी नज़र मे आ रहे है कुछ पेड़-पोधे भी नज़र मे आ रहे है कुछ पत्थर भी नज़र मे आ रहे है कुछ पहाड़ भी नज़र मे आ रहे है।

कुछ पहाड़ भी नज़र मे आ रहे है कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे है कुछ मकान भी दिख रहे है कुछ पानी भी दिख रहा है।

कुछ बादल भी दिखाई दे रहा है कुछ अ हम्म बिजली के खम्बे भी दिख रहे है ।